और एक मेम हैं जो भी स्टेज को संभल रही हैं यहाँ पर एक लड़की हैं जो की कत्थक की ड्रेस पहने हुए है जो रही हैं।

यहाँ पे एक ठेला लगा हुआ है ठेले पे बहुत सारे फ्रूट रखे गए है।

सामने की और दुखान पे कुछ कैलेंडर रखे गए हैंऔर कुछ बुक्स भी दिखाई दे रही हैं यहाँ पर बहोत सारी किताबे रखी हुई हैं।

यहाँ पे परदी बनायीं गयी हैं जिसपे ये सफेद कलर पोता गया हैं और यहाँ पे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं जो की हरे-हरे हैं।

यहाँ पर कुछ घास जो है झालीदार हैं कुछ बड़ी-बड़ी भी हैं।

जो की पथरीला बना हुआ है बिल्डिंग में सफ़ेद कलर पोता गया है यहाँ पे क बड़े-बड़े खंभे भी हैं।

यहाँ पर तीन गुलदस्ते नीचे की और दिखाई दे रहें हैं उनके फ्लावर्स पे पन्नी लगी हुई है और यहाँ पर पीले लाल नीले --